यहाँ पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर अ अ काफी सारे सामान है कुछ पॉलिथीन में दिखाई दे रहा है यहाँ पर आस-पास एक सड़क भी नजर आती हुई नजर आ रही है यहाँ पर आसमान भी दिखाई दे रहा है।